ओर सामने इस फोटो के सामने हमें बहोत सारे पेड़ पौधे दिखाई दे रहे--

की ओर छप्पर बना हुआ व्हाइट कलर छप्पर बना हुआ रेड कलर का छप्पर और आसमान साफ दिखाई दे रहा

फैक्ट्री बनी हुई दिखाई दे रही है एक सामने कि ओर बाजू में घर बना हुआ फैक्ट्री के बाहर कहीं गाड़ियां खड़ी हुई दिखाई दे रही है इसमें गाड़ियों में --

लगी हुई दिखाई दे लंबे लंबे हुए हैं।

सामने की ओर कई साइकिल गाड़ियां मोटर इस प्रकार की चीजें खड़ी हुई सामने एक घर

कई लंबी लंबी लाइटे लगाई गई हैं टाल्से लगाई गई हैं कई प्रकार की मुर्गी बहुत सारी मुर्गी रखी हुई--

यहां हनुमान जी की पूजा होती है वाइट कलर मंदिर पोता गया है भगवा कलर के तंबू बनाए गए हैं लोहे के--

सा साइड में रे रेलिंग लगाई गई है पकड़ के जाने के लिए साइड में दो बलफ जलते हुए दिखाई दे रहे है व्हाइट कलर के --

दीवाल में कई प्रकार की पेंटिंग है आगे चेयर टंगी हुईं दे--

वाइट कलर पोता गया है।

आईना सामने की ओर लगाया गया है यहां पे तरह तरह के कपड़े टंगे दिखाई दे रहे--

नीचे की ओर तेरी अ इकट्ठा पानी भरा हुआ दिखा दिखाई दे रहा है।